और इसमें एक लाल रंग के पाइप भी बंधा हुआ है।

इसमें शीशे के दरवाजे भी लगे हुए हैं और इसके ऊपर एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

इस फोटो में दो ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं जो लाल रंग के हैं।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

इसमें रोड भी दिखाई दे रही है और एक मोटर साइकिल --

और चौबीस चालीस भी लिखा हुआ है और एक आदमी ने हाथ में कलावा बांध रखा है।

और इसमें पीछे कट्टे में कुछ फूल भी रखे हुए हैं पीले रंग के और इसमें आदमी भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में लकड़ी के बक्से बने हुए हैं।

और उनमें कुछ सामान भी रखा हुआ है।

कार भी खड़ी हुई हैं और एक कार टूटी हुई खड़ी हुई है और इसमें एक दरवाजा भी दिख रहा है।

और इस लड़के की टी शर्ट पर कुछ लिखा हुआ भी है।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

और उनके चेहरे को ब्लर किया हुआ है और दो लड़के शीशे पर कुछ काम कर रहे हैं।

और इसमें चारों ओर सामान भी फैला हुआ है और टेबल पर एक इंच टेप रखा हुआ है।

और एक हरे रंग का कागज भी रखा हुआ है।

इसमें अखबार भी दिखाई दे रहा है।

और इसके ग्राउंड में हल्की हल्की घास भी उग रही है।

और इसमें हल्के छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें दो बालक भी दिखाई दे रहे हैं और एक के शर्ट पे ऊंट भी छपा हुआ है।

और इसमें स्टील के बसन में मच्छियां रखी हुई है और उसका अंगूठा भी दिखाई दे रहा है।

उन पर काला कपड़ा गिरा हुआ है और इसमें एक आग बुझाने का सिलेंडर भी दिख रहा है।

इसपर न्यू फैशन लिखा हुआ है और मिड पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

इसमें कुछ लोहे की नाड़े भी पड़ी हुई है और नीचे ईंट बिछी हुई है।

जिसमें एक लड़का स्कूटी पर बैठे हुए है।

इसमें बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं और उनके चेहरे को ब्लर किया--

जिसमें कुछ के चेहरे को ब्लर किया हुआ है और इसमें एक हरी चद्दर भी दिखाई दे रही है।

और उसके पीछे कुछ फैक्ट्री टाइप है जिसकी नीले रंग की टिन दिख रही है और इसमें बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक ए_सी दिखाई दे रही है।

और इसमें खूंटी पर कुछ कपड़े भी टंगे हुए हैं।